यह चित्र एक डॉक्टर की क्लीनिक का है इस चित्र में--

जमीन पे कुछ जंगलीया घास और पौधे भी दिख रहे है।

पेड़-पौधे और घास भी है। कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

कुछ बिल्डिंग और दुकान भी दिखाई दे रहे है।

डला हुआ है। कुछ काड़ी भी दिख रही है।

यहां कालका माता दिखाई दे रही है सरस्वती माताजी भी--

कुछ लोग मोबत्तियां जला रहे हैं प्लस का चिन्ह भी दिख रहा है।

इस चित्र में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग--

बहोत बड़ा मैदान दिख रहा है।

मैदान के आस पास बाउंड्री बनी हुई--

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही।

वृक्ष भी है और नदी के आसपास कुछ बिल्डिंग भी दिख रही है।

यह चित्र एक फैक्ट्री का है।